जो है पूजा जब भी आती है तो लड़की लोग अपना प्रदर्शन जो है वो करती है। अपना कला का इस्तेमाल करती है और देवी के रूप में आके बच्चो लोगो को अपना जागरूक करके ये दिखा --